यह एक सड़क है । इस सड़क पर एक मेले में आने वाली ट्रेन खड़ी है । इस ट्रेन के एक साइड छोटे-छोटे पेड़ हैं और एक साइड बड़े-बड़े पेड़ हैं ।

यह एक मंदिर है। यह मंदिर बहुत बड़ा है। इस मंदिर को काफी --

इस गाड़ी में पांच-छ आदमी बैठा जाता है। इसमें एक ड्राईवर होता है जो गाड़ी को चलाते है। यह डीजल से चलता --